यहां पर एक चित्र दिखाई दे रहा है। देखने से ऐसा लग रहा है कि सामने बिल्डिंग बन रही है।

इसके अगल-बगल बिल्डिंगे नजर आ रही हैं और यहां पर जो कलर है अलग-अलग कलर के यहां पर --

यहाँ पर एक चित्र दिखाई दे रहा है। सामने देखने से ऐसा लग रहा है की यह कोइ गार्डन जैसा एरिया है।

देखने से ऐसा लग रहा है कि सामने एक स्कूल के अंदर का दृश्य नजर आ रहा है यहाँ पर बहोत ही लंबा कॉरिडोर जैसा दिखरा है।

और जालीनुमा गेट भी दिखाई दे रहे हैं बहुत ही सुंदर दृश्य है देखने में --

यहाँ पर एक चित्र दिखाई दे रहा है सामने देखने से लग रहा है कि बिल्डिंग में एक यहाँ पर हॉल है।